और दो आदमी जेंट्स घर बना रहे हैं।

और कुछ पर लाइट्स लगी हुई हैं कुछ पर्दे लगे हुए हैं।

और एक टेबल रखी हुई है। एक कंप्यूटर है। सामने एक टेबल और है और उम्म दो चेयर है।

और नीचे क्या कहते हैं अं ग्रेनाइट है जो ब्लैक कलर का है और बगल में एक लोहा और गड़ा हुआ हैं आगे स्टीकर लगा हुआ --

और आसपास पेड़ है पर माहौल जो है वो रात का है।

हैंडल हैं बढ़िया सा सजाया गया हैं इसको अंदर सोफे के अ दुकान के अंदर बहोत खूबसूरत सा एक लकड़ी रखी हुई है।

और कुछ लोग अ अंदर जाके माता जी की पूजा कर रहे हैं।

बहुत हरियाली है बहोत खूबसूरत दूनाई दे रहा है।

कुछ कप उ कुछ कपड़े पुतलों को पहनाया गया है।

उस इंसान ने अपना चेहरा ढका हुआ है कुछ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा है पर थोड़ा सा सवाल जैसा लग रहा है पर अंदर कुछ औरतें कुछ जेंट्स बैठे हुए--

और सामने लड़कियां बैठी हुईं हैं पीछे लड़के बैठे हुएं हैं।

जो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत खूबसूरत लग रहा है।

जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और एक बच्चा उसके सामने खड़ा हुआ है।

जो अह शुभ ऑटो के नाम से है।

और अंदर कुछ जा दिखाई दे रहा है।